एक ऑटो है एक ठेला दिख रहा है ।

और डैम पक्का बना हुआ है।

और एक बैग दिख रहा है जिसमें हार्मोनियम को डाला जाता है ।

और ये हैवी जिम वाला प्रोडक्ट है।

एक आदमी की चप्पल दिख री है।

महत्मा बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है।

रेल्वे स्टेशन के इस पार से उस पार पटरी से ये लोग जा रहे है।

हम्म दस पंद्रह लोगों की भीड़ है।

ये नेशनल हाइवे लग रहा है।

बड़े- बड़े पत्थर के टुकड़े है।

बहोत सारे सामान दिख रहे हैं एकदम सेटअप दिख रहे हैं ।

बगल में नहर गुजरी हुई है।

एक चेयर बगल में खड़ी रखी हुई है साइड में --

यह एक झरने की फोटो है।

झरना ऊपर से गिर रहा है नीचे पानी गिर रहा है।

एक चबूतरा बना हुवा है और एक तख्त रखा हुवा है। नीचे इसमे दरवाजा दिख रहा है।

ऊ बगल से एक गल्ली गई हुवी है छोटी सी जो की पत्थर की बनी हुवी है।

कोई भी व्यक्ति नहीं है इसमें ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है ।

एक पुरुष जो है एक मार्केट की फोटो खींच रहा है।

हॉस्पिटल की दीवार का कलर वाइट है।

यूनियन बैंक का दरवाजा दिख रहा है जो कांच का बना हुआ है ।